मेरा पर्पल कलर दिखाई दे रहा है डार्क ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है यहाँ पे ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है पिंक कलर दिखाई दे रहा है और भी बहुत सारे कलर दिखाई दे रहे है वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ दाने दिखाई दे रहे है।

--दे रही है और दिखाई दे रहा यहाँ पे एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है यहाँ बहुत सारे कार दिखाई दे रही है बाइक्स दिखाई दे रही है और भी बहुत सारे समान दिखाई आई ब्लू स्काई ब्लू कलर दिखाई दे रहा है और --]

दिखाई दे रहा है बहुत सा समान दिखाई दे रहा है गोभी दिखाई दे रही बैगन दिखाई दे रहे है आलू लेशन प्याज गाजर नीबू टमाटर--

उसमे ताला देख यहाँ पे एक बैनर लगा है जिसमे पिंक ब्लू और पिंक कलर दिखाई दे रहा है और भी बहोत सारी चीजे दिखाई दे रहा है यहाँ पे यहाँ पे दो व्यक्ति बने हुई है बैनर पे --